बाइक दिख रहा है नया -नया स्कूटी दिख रहा है स-बिल्डिंग दिख रहा है।

बैठ के केमरे मे देख रहा है।